एक नल लगा हुआ दिख रहा है।

एक सोफा भी दिख रहा है।

सुंदर से दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर --

और एक नेट की जाली भी दिख रही है।

हेयर सैलून दिख रहा है जिस पर--

उनकी तस्वीर भी दिख रही हैं।

लंबा सा रास्ता दिख रहा है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिख रही है।

एक गार्डन में बहोत सारी कुर्सियां--

उस पर रखी हुई दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे लोग भी--

एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में हमें मंदिर जैसा कुछ--

मेड इंडिया पाउडर कोटिंग नाम लिखा हुआ दिख रहा है।

और हरी घास भी दिख रही है।

जिस पर ज्योति एंब्रॉयडरी वर्क्स लिखा है।

श्री धारेश्वर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर --

होटल श्री बालाजी दिख रहा है।

राहुल हाइड्रोलिक का पोस्टर दिख रहा है। नीचे--